बहुत ही पुराना मंदीर हे एमा कुछ दर्शन करया बी नई आ हे अभी बंद हे मंदीर ह बगल मा ओखर--

कुछ घेरा हे और पूरा पत्थ्रा के मंदीर हे अम और दिया वीया जलावल--

मंदिर ए मंदिर के नीचे छत ह दिखत हे अउ नजारा बहुत आ मंदीर के टिप उपर बा पेड़-पौधा जामे हे।

तीन जन आदमी बन बेठे हे दु जनमन खड़े हे दु जनमन नीला पहने हय मस्त होटल ह हे।